रेड वाला और एक और बिल्डिंग बन रही है ने जिसमे काम चल रहा है।

ये कोई सामने बैंक है और कुछ उसके सामने रिक्शा वाले जा रहे हैं।